पेन के काफी सारे बॉक्सेस पड़े है।

इन सब का कलर अलग अलग है।

ये किसी के घर की तस्वीर है इस घर का गेट --

ये नेहेर की तस्वीर है।

ये व्हाइट कलर की कार है।

इस पैलेस में काफी टेबल चेयर्स लगी हुई हैं।

काफी डब्बे एंड सूट पड़े हैं।

एक आदमी इन सबको मशीन से एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है।

काफ़ी बेड लगी हुई है।